दो आदमी खड़े हुए हैं । एक लोवर टी-शर्ट और एक पेंट शर्ट में है। जिन्होंने गेट को शायद ओपन कर रहे है शायद यह बैंक का गेट है।

आदमी है जो कि कुछ कर रहा है जो कि गाड़ी है। जिसपे ये ठीक कर रहा या कुछ पैंट टाइप कर रहा हैं।

जिसने हाथ ऊपर कर रखा है हाथ उ नीचे कर रखा है जिसने धोती कुर्ता टाइप ऐसे कुछ पहन रखा है जो की स्टेज पर है --

और अ इस ये दिन दिन है अभी वायर लगी हुई है लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं आसपास पेड़-पोधे भी हैं।

है जोकि जाडू लगा रहा है। नंगे पैर है। वो लोअर टू- लूवरटु लोअर टी शर्ट मे है वो और उ कमरे के बाहर अ गेट खुले हुए है। एक ऊपर बैनर लगा हुआ है।